इस तस्वीर में मुझे एक चैन दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे फल दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं।